दिखाई दे रही है यहां आमने सामने दो शॉप दिख रही है।

जहां एक शॉप पर पर्स होम और दूसरी शॉप पर साड़ी होम दिख रही--

एक बड़ा सा ढाबा दिख रहा है चित्र के अंदर ढाबे में--

होटल राजपूत लिखा हुआ है। यह चित्र में होटल के बाहर--

मुझे यहां पर एक गुफा का चित्र--

जाता हुआ दिखाई दे रहा है।

दूल्हा दुल्हन का इस्टेज बना हुआ दिख रहा है जिसके नीचे--

दे रहा है इसमें एक छोटा सा ताला लगा है।